इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं कि मुझे एक--

एक बड़ा ही बाल है जिसके ऊपर लाइटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है और एक व्यक्ति जोकि भाई साहब हैं उस इस तरफ आ भी रहे हैं।

आवश्यकता है इसमें कोई लोग बैग लेके आ--

विशाल में जगह जगह पाचकना दिखाई दे रही है एक समाधि स्थल भी हो सकता है और इसके पास में बड़े बड़े पेड़ पौधे भी लगाए गए --

और इसके बाहरी ओर दो तीन गाड़ी भी बाइक भी खड़ी हुई है और एक जोकि आ आ व्यक्ति है बाहर की तरफ देख रहा है उस --

और दु दुकाने भी लगई गई हैं इसमें देख एक सामने--

मजबूत रखा गया है और इसमें दीवाल पर फोटो भी लगाई गई है और ये पर जैसे की लाइट पर पर्दा रखते हैं वैसे पर्दा भी लगाया गया है।

जिसमें अलग-अलग साइन और रिपेयरिंग का बोर्ड लगा हुआ है ढाई बजे का स्थान समय लिखा हुआ है ये कांच का लगा हुआ है जिसमें --